दिखाई दे रही है। एक बाहर हमे टेम्पो दिखाई दे रहा है। छोटे-छोटे चार पाच गमले रखे हुए--

और साइड मे हमे बहोत बड़ा महल सा दिखाई दे रहा है| कुछ पेढे दिखाई दे रहे है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा।

इस ईमेज मे हमे ये मंदिर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सीढ़िया लगी हुई दिख रही है। रेलिंग लगी हुए है। और मंदिर मे हमे दो तीन लेडीज दिखाई दे रही है।

और इस जंगल मे हमे बहुत सारे पेढ़े दिखाई दे रहे है। कुछ पेढे टूट कर नीचे डले हुए दिख रहे है।

और हमे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हे छोटे छोटे पहाड़ पर हरियाली भी हमे दिखाई दे रही हे।

और एक पेड़ भी हमे साइड मे रखा हुआ दिख रहा है जिस की पत्तिया दिखाई दे रही है सामने एक गमला रखा हुआ है जिस मे छोटा पेड़ लगा रखा लगा हुआ है सामने एक आकृति भी बनी हुई है।